एक लोहे का ग्रिल लगा हुआ है।

तथा टेंट में कुर्सी भी रखी हुई है।

यहां पर एक नर्सरी दिखाई दे रही है।

इसके बाहर गाड़ी भी खड़ी है।

यहां पर एक होटल सी दिख रही है।

यहां पर कुछ बर्फीला क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है।